तस्वीर में एक इमारत दिखाई दे रही है जो सफेद रंग की है और एक दीवार से घिरी हुई है।

इमारत के पीछे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं जो प्राकृतिक वातावरण का हिस्सा है।

भारत आवासीय कार्यालय जैसे लग रही है और दिन का उजाला तस्वीर में दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक भीड़ भाड़ वाली जगह दिखाई दे रही है जहां कई लोग इकट्ठा हुए हैं।

पीछे कुछ दुकानें या साइन बोर्ड दिखाई दे रहे हैं जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कोई बाजार या रेलवे स्टेशन हो सकता है।

दूर दराद में कुछ घर और पेड़ दिखाई दे रहे हैं जो प्राकृतिक वातावरण का संकेत दे रहे हैं।

उपर पर लगे बोर्ड पर ब्यूटी पार्लर से संबंधित सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई है।

दुकान के सामने एक हरा बोर्ड लगा है और कुछ अन्य वस्तुएं भी रखी हुई हैं।

यह एक फूलों का बाजार है जहां कई लोग फूल खरीदने और बेचने में ब्यस्त हैं।

इस तस्वीर में एक धातु का पुल दिखाई दे रहा है जो एक नदी के जलाशय के ऊपर बना हुआ हैं।

किले के सामने एक पथरीला मैदान है जो सुखी घास और झाड़ियां उगी हुई हैं।

व्यक्ति ने फेस मास्क पहन रखा है जो दर्शाता है कोई चिकित्सा कर्मी हो सकता है।

कमरे का फर्श सफेद संगमरमर जैसा लग रहा है जो साफ और चमकदार है कमरे के कोने में एक पर्दा लगा हुआ है जो गहरे रंग का है और शायद किसी दरवाजे को ढक रहा है।

इस तस्वीर में एक विद्यालय का दृश्य प्रस्तुत हो रहा है जिसका नाम श्री राम महाविद्यालय पटोवा लिखा हुआ है।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

दुकान के बाहर सीढ़ियां है और सामने एक खंभे पर पोस्टर चिपके हुए हैं।

ए वस्तु शायद किसी मशीन या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के पुर्जे है जिनमें बटन या स्विच जैसे छेद दिखाई देते हैं।

जगह किसी औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित प्रतीत होती है।

क्या तस्वीर एक मोटरसाइकिल रिपेयर दुकान को दर्शाती है।

जैसे यह अधिकारिक मीटिंग या प्रशिक्षण सत्र लग रहा है।